जैसा कि नाम से ही हम देख पा रहे हैं कुछ कोचिंग होती है जैसे कि फिटजी एफआईआईटीजेईई |

हम तस्वीर देखते ही समझ सकते हैं कि ये किसी दुकान के अंदर की तस्वीर है। जहाँ गुबारों से यानी कि जो भारत के तीन रंग होते हैं सफेद हरा केसरिया --

रिक्सा रिक्सा के ड्राइवर पुलिस सड़कें कुछ इमारतें कुछ दुकानें कुछ हॉस्पिटल कुछ बाइक --